साइड में एक जाली बनी हुई है।

एक लोहे का गेट भी लग रहा है।

नदी में एक नाव है।

यहां लाइटे भी जल रही है।

और वो फोन चला रहा है और यहां लाइटें भी जल रही हैं।

यहां कार भी खड़ी हुई है।

यहां फावड़ा भी रखा हुआ है।

यह एक बहोत बड़ी मशीन है।

मशीन में कुछ काम हो रहा है और यहां लाइट भी जल रही है।